मूर्ति पीला कलर का है और उसके नीचे में एक गुलाबी कलर का कुछ है।

स्कूल में गेट बना हुआ है लोहा का और उसके ऊपर में एक और घर है और वहां पर एक लाइट लगा है।

और वहाँ पर बहुत सारा आदमी खड़ा है और एक लाइट जो है गेट जैसा बना हुआ है छः से चार गेट बना हुआ है।

कुछ लोग बैठे हुए हैंएक महिला वहां पर खड़ी है और एक महिला सोई हुई है और मंदिर के सामने में ही वहां पर शिवजी और पार्वती जी का प्रतिमा बना हुआ है।

बस स्टैंड है जहां पर बहुत सारा बस खड़ा है।

पेड़ को नीचे में पेंट कर दिया गया है।

बहुत बड़ा झरना है जिसके नीचे में बहुत सारा आदमी है।

बहुत सारा पत्थर है और उसके ऊपर में भी बहुत सारा आदमी खड़ा है और राइट साइड में पेड़ लगा हुआ हैं।

कुछ ट्रैक्टर नीला कलर का है कुछ हरा कलर का है।

दो आदमी सामने में ही खड़ा है एक आदमी के हाथ में मोबाइल है।

नीचे मे बहुत सारा कार्टून रखा हुआ है कपड़ा का ऊपर मे सी_सी_टी_वी लगा हुआ है।

वहां पर एक गेट लगा हुआ है एक पोस्टर छपा है जिसमें एक आदमी है।

एक ऑफिस जैसा है जहां पर तीन आदमी खड़ा है एक काउंटर लगा हुआ है इस पर तीन आदमी खड़ा है।

और उस साइड में एक कुर्सी है जिसके ऊपर में एक छोटा तकिया लगा हुआ है और ऊपर में एक पेंटिंग है।

और नीचे में ही बहुत सारा फ्रिज रखा हुआ है। और साइड - साइड में पोस्टर लगा हुआ है।

और उसके ऊपर में दो झंडा लगा हुआ है और वहां पर एक पेड़ है राइट साइड में भी पेड़ है लेफ्ट साइड में भी पेड़ है।

बहुत बड़ा नदी है आगे से बहुत सारा पानी आ रहा है साइड साइड में बहुत सारा पत्थल है।

और बाहर में दो गेट लगा हुआ है गेट में लिखा हुआ है बरनवाल सेवा सधन ।